यहां पे एक जिम है और उस जिम में--

यहां पे एक रोड दिख रहा है।

और उसके ऊपर की जो पिलर्स हैं वो अलग अलग कलर्स के हैं।

उस शॉप में बहुत सारे अलग अलग कलर्स एंड टाइप के कपड़े दिख रहे हैं और उस शॉप के सीलिंग में--